यह बहुत बड़ा खेत है खेत में घास लगी हुई है वह जानवर लोग मम गाय भैंस चर रही है।

यह बाइके रखी हुई है सामने वाइट कलर की सीढ़ियां है वहां पर भी बहुत सारी बाइके रखी हुई है।

ये फारेस्ट है मतलब जंगल जंगल में कई सारे पेड़ लगे है जो सब सूख रहे हैं।